एक्सरसाइज करने के लिए जिम में बहुत सारी मशीनें होती है।

जिससे की लोग एक्सरसाइज करते हैं और जिम करने से शरीर फिट रहता है।

और यह बस स्टैंड बहुत ही बड़ा है ।

यहाँ पे लोग पैसे जमा करने आते है खाते खुलाने आते है।

दुकान है। जनरल स्टोर है।

काम्प्लेक्स को बनाने के लिए बहुत सारी --

यहाँ पे फादर होते है जो की लोगों को --

और यहाँ पे बहुत ही अच्छे इलाज की जाती है यहाँ पे बहोत --

और यहाँ पे सभी प्रकार के सामान बहुत ही सस्ते दामों में --

और यहाँ पे सभी प्रकार के फूल मिलते है। और लोग फूलों से दुल्हन को सजाते है।